बाल्टी से आटे नीचे मशीन में रख रहे हैं ऊपरी हिस्से से मशीन का पूरा पाइप दिख रहा है और नीचे में दो मशीन का एक --

स्तंभ खड़ा है और नीचे में इसी के द्वारा लोग रुल फॉलो करते हैं।

वस्त्र को पेहनाने वाली मूर्ति टूटा हुआ है और नीचे रखा हुआ है और बहुत सारे कार्टून में कुछ वस्त्र जैसे की मोजा वगेरा रखा हु --